इस चित्र मे एक मेडिकल दिख रहा है मेडिकल मे बहुत सारे दवाएं रखे हुए है मेडिकल के अंदर एक आदमी मास्क लगाकर खड़ा हुआ है।

इस चित्र मे कुछ लोग खडे हुए दिखाई दे रहे है ये एक चर्च का चित्र है इसमे फादर भी खडे हुए है।

येह चित्र एक कार्यक्रम का है। जहा कुछ ल लड़कीया खड़ी होकर नृत्य कर रही है--

हरी रंग घास पे--

येह चित्र खुले से मेदान का है। जहा काफी सारी पेड़ लगी दिख रही है। पौधे आसमान मे बादल दिख रहे है।

ये चित्र एक जगह का है। जहा बहोत सारी रेत पड़ी--

और पेड़ पौधे नजर आ रहे है। हरे रंग--